तथा बिजली के टावर बने हुए हैं थोड़ी दूरी पर माउंटैंस है और छेद बने हुए हैं।

एक पार्क है पार्क मे बहुत सारे पौधे फूल पेड़ उगे हुए है आस-पास बाउंड्री बनाई गई है।